पीछे मुझे जिज्स की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं।

दूर पर एक पहाड़ भी दिख रहा है आसमान बहुत साफ है।

यह एक जिम का इमेज लग रहा है।

ट्रेडमिल और एक पंचिंग बैग भी दिख रहे हैं।

साइड पर एक सोनल पैनल भी दिख रहा है।

इसके हाथ पे एक फोन भी है।

एक सफेद कार भी नजर आ रही है।

इस छवि में मुझे एक गेट दिख रहा है।

घर के सामने एक रेड कलर की गा गाड़ी भी खड़ी हुई है।

इस इमेज में एक वुडन ब्रिज दिख रहा है जो लाइट से सजाया गया है।

गेट के दोनों तरफ कांक्रीट के पिलर है जिसमें कम टू लर्न और इ_एस_टी_डी नाइंटिन सिक्सटी एट लिखा है।

बाहर एक सिलेंडर है और मोमोज स्टीम करने करने वाला भी है।

कुछ चेयर भी दिख रही है।

आसमान भी बहुत साफ दिख रहा है।

बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

एक टूथ पिक एक चॉकलेट एक टेबल वॉच भी दिख रही है।

इस छवि में मुझे एक ओपन एरिया दिख रहा है।

पुल के आसपास ग्रीन नेट की फेंसिंग लगी हुई है।

एक तरफ कलरफुल अंब्रेला भी दिख रहा दिख रही है।

यहां पर बच्चों की खेलने की चीजें हैं।

पार्क के आसपास बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

दूसरी तरफ पेड़ पौधे हैं।

बीच में एक कच्चा रास्ता है जो आगे जा रहा है।